इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक डिज़ाइन व्यू का इस्तेमाल करके एक क्वेरी बनाएँ
क्वेरी डिज़ाइन विंडो में टेबल्स जोड़ें
फील्ड्स चुनें
अलिअसेस सेट करें सोर्टिंग का क्रम सेट करें और एक क्वेरी के लिए खोज मापदंड प्रदान करें
इसके लिए अपनी परिचित उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस को लेते हैं
लाइब्रेरी डेटाबेस में हमने पुस्तकों और सदस्यों की जानकारी संचित की है
और साथ ही हमारे पास स्स्दस्यों को जारी की हुई पुस्तकों को पता लगाने के लिए एक टेबल है
अब सदस्यों को जारी की हुई सभी पुस्तकों को सूचीबद्ध करने के लिए हम एक नई क्वेरी बनाएँगे
दूसरे शब्दों में चलिए पुस्तकों का एक विवरण बनाते हैं जो सदस्यों को जारी की गयी हैं
चलिए लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं
बाएं पैनल पर क्वेरीज आइकन पर क्लिक करते हैं
दायें पैनेल पर हम क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे
हम अब एक नई विंडो देखते हैं जिसे क्वेरी डिज़ाइन विंडो भी कहते हैं
और साथ ही हम उपर एक छोटा पॉपअप विंडो देखते हैं जो कहता है एड टेबल ओर क्वेरी
यह वह है जहाँ हम क्वेरी के लिए डेटा स्रोत निर्धारित करेंगे
और हमें सदस्यों को जारी की हुई पुस्तकों के विवरण की क्वेरी बनाने के लिए सभी तीनों टेबल्स की आवश्यकता होगी
हम यह सूची में बुक्स टेबल पर क्लिक करके कर सकते हैं और फिर पॉपअप विंडो की दायीं तरफ एड बटन पर क्लिक करते हैं
इसी तरह से हम बुकसिश्यूड टेबल और मेंबर्स टेबल जोड़ेंगे
अब हम देख सकते हैं कि तीन क्वेरीस पीछे की क्वेरी डिज़ाइन विंडो में दिखाई दे रही हैं
चलिए अब पॉपअप विंडो को बंद करते हैं
यह क्वेरी डिज़ाइन विंडो को आगे लाएगा
ध्यान दीजिये कि तीन टेबल्स विंडो के आधे उपरी भाग में हैं
यहाँ चलिए टेबल्स के बीच में कुछ जगह बनाते हैं
चलिए मेंबर्स टेबल को दायीं तरफ क्लिक करके ड्रैग और ड्रॉप करते हैं
और फिर बुकसिश्यूड टेबल को बीच में क्लिक ड्रैग और ड्रॉप करते हैं
अब हम इन टेबल्स को जोडती हुई लाइंस देखते हैं और यह वह सम्बन्ध है जिसे हमने पहले बनाया था
हम सम्बन्ध की जानकारी देखने के लिए लाइंस पर डबल क्लिक कर सकते हैं
अभी के लिए क्वेरी विंडो का निचला आधा हिस्सा देखते हैं
इस क्षेत्र के पास सेल्स की कई सारी रोस हैं
जैसे हम क्वेरी बनायेंगे हम इसे भर देंगे
सबसे पहले हम फील्ड कॉलम देखेंगे
यह उन फील्ड्स का विवरण देने के लिए जिन्हें हम उत्तर के सेट में दर्शाना चाहते हैं
यह करने के लिए पहले हम विंडो के उपरी आधे भाग में बुक्स टेबल में टाइटल फील्ड में डबल क्लिक करेंगे
अगला मेंबर्स टेबल में नामे फील्ड
और फिर बुकसिश्यूड टेबल में इश्यू डेट फील्ड
अगला रिटर्न डेट एक्चुअल रिटर्न डेट और अंततः चेक्ड इन फील्ड
विंडो के निचले आधे भाग में पहली रो में इन फील्ड्स पर ध्यान दीजिये
साथ ही तीसरी रो में समरूपी टेबल के नाम
अगला दूसरी रो में अलियास को देखते हैं
यह वह है जहाँ हम चुनित फील्ड्स के लिए विवरणात्मक नाम दे सकते हैं
अतः जैसा चित्र में दर्शाया गया है वैसा एलियासेस में टाइप करते हैं
और एलियासेस हमने कर लिया
अगला हम सोर्ट रो को देखते हैं
हम उत्तर के सेट का क्रम यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं
चूँकि हमें जारी की हुई पुस्तकों का विवरण चाहिए हम इसे तिथि के अनुसार क्रम में लगाएँगे
मतलब कि हम उत्तर के सेट को इश्यूडेट के अनुसार आरोही क्रम में क्रमबद्ध करेंगे
इसके लिएIssuedate फील्ड के अंदर हम सोर्ट रो में रिक्त सेल पर क्लिक करेंगे
और असेंडिंग पर क्लिक करते हैं
ठीक है हम अगली रो विजिबल पर जाएँगे
यहाँ हम फील्ड्स की प्रत्यक्षता सेट कर सकते हैं हम इन्हें चेक या अनचेक करके चुनेंगे
ध्यान दीजिये कि डीफॉल्ट रूप से यह सारे चेक्ड होते हैं
अगला हम फंक्शन रो में जाएँगे
यह जटिल क्वेरीस बनाने के लिए उपयोग होता है
अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं
और हम क्राइटेरियन रो पर जाएँगे
यहीं पर हम मापदंड के सरल और जटिल सेट को परिणाम के लिए सीमित कर सकते हैं
उदाहरणस्वरुप हम केवल उन पुस्तकों के लिए क्वेरीस कर सकते हैं जोकि सदस्यों ने जारी की थी किन्तु वापस नहीं की
मतलब केवल वह जो चेक्डइन नहीं हैं
अतः इस रो में चेकडिन फील्ड के अंदर खाली सेल पर क्लिक करते हैं और इक्वल्स ज़ेरो टाइप करते हैं
ठीक है अब इस क्वेरी को रन करते हैं
हम कीबोर्ड शॉर्टकट फ़5 इस्तेमाल कर सकते हैं या विंडो के उपर एडिट मेन्यु पर क्लिक करते हैं
और नीचे रुन क्वेरी पर क्लीक करते हैं
क्या विंडो के उपरी भाग में आप कुछ डेटा देख सकते हैं
यह आपकी क्वेरी के उत्तर हैं
ध्यान दीजिये कि हम सदस्यों की जारी की गयी पुस्तकों का विवरण देख रहे हैं और इश्यू डेट से क्रम में लगायी गयी हैं
यह भी ध्यान दीजिये कि कोई भी पुस्तक चेक्ड इन नहीं है
अब हम नीचे क्वेरी डिज़ाइन क्षेत्र में जा सकते हैं और जिस तरह से हम चाहते हैं वैसे बदल सकते हैं
उदाहरणस्वरुप चलिए चेक्ड इन मापदंड हटा देते हैं
अब फ़5 दबाकर क्वेरी को फिर से रन करते हैं
इस बार हम क्वेरी से मिलने वाली डेटा की लम्बी सूची देखेंगे
अगला कंट्रोल एस दबाकर इस क्वेरी को सेव करते हैं
यह एक छोटी पॉपअप विंडो खोलेगा
अपनी क्वेरी को हम यहाँ एक विवरणात्मक नाम देते हैं
चलिए टाइप करते हैं हैं हिस्टोरी ओएफ बुक्स इश्यूड टो मेंबर्स और फिर ओक बटन पर क्लिक करिये
और इस विंडो को बंद करिये
हम इस सेव की गयी क्वेरी को मुख्य बेस विंडो में क्वेरी के नाम पर डबल क्लिक करके खोल सकते हैं
तो यहाँ हमने डिज़ाइन व्यू का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक एक क्वेरी बना ली
यहाँ एक नियत कार्य है सदस्य निशा शर्मा को जारी कि गयी पुस्त्कों की एक सूची बनाइए
सूची इश्यू डेट के हिसाब से क्रम में होनी चाहिए
इसी के साथ हम लिबरऑफिस बेस पर डिज़ाइन व्यू में क्वेरीस बनाने के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा की कैसे डिजाइन व्यू का इस्तेमाल करके एक क्वेरी बनाएँ
क्वेरी डिजाइन विंडो में टेबल्स जोड़ेंफील्ड्स चुनें
एलियासेस सेट करें सोर्टिंग का क्रम सेट करें
और एक क्वेरी के लिए खोज मापदंड तैयार करें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद